और उस पार्क में घास भी उगी हुई है।

और रेलवे स्टेशन जंक्शन है।

इस वीडिओ में सामने डी.एस.पी. सोडा एंड कॉफ़ी शॉप की दुकान --

और उसके मुख्य द्वार पर अधिक संख्या में साइकिले रखी हुई हैं।

इस वीडियो में एक परचून की दुकान कॉस्मेटिक की दुकान है। एक --